आ घर नजर आ रहे बहोत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है बाहर में साइकिल्स लगे हुए हैं।

और चार पांच बिल्डिंग होंगे और एक बाइक में एक लड़का बैठा हुआ है ध्वजा टंगा हुआ है।

कार लगे हुए हैं बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।